बहुत बड़ा रोड दिखाई दे रहा है। उस रोड पे गाड़ी लगा हुआ है ब --

बहुत बड़ा मकान है।

और अअ गृह प्रवेश हुआ है अभी तुरंत नया मकान --

और चारो बगल से बहुत बड़ा अ मकान है। चारो बगल से घेरा हुआ है।

बहुत अ बड़ा-बड़ा पौधा भी है।

और बहुत सारी खिड़की भी है। वहाँ पे ह हर एक चीज का पेड़-पौधा है वहाँ।

और बहुत सारा पेड़ है। वहाँ पे पोल भी है और एक बहुत सारे आदमी भी हैं बैठे हुए।

और वहाँ पे झंडा भी है चारों बगल पेड़-पौधा भी है।